इस तस्वीर में एक अ मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के अंदर एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो की काले कलर की है शनि भगवान की मु मूर्ति है ये।

और काले कलर की मूर्ति दिखाई दे रही है और उजले कलर की शंख भी रखी हुई है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का टी-शर्ट और ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है।